एवं यहाँ पर एक रेड कलर की बस भी खड़ी हुई है।

के ऊपर जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां लगी हुई है ।